बहुत - सा बड़ा बाजार दिखाई दे रहा हैं और एक व्यक्ति मास्क पेहना हुआ हैं और हरे रंग के जाम दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सा पिंजरा और एक हरा सा तोता उसकी पूछ लाल और मिर्ची और एक लकड़ी और कुंडे